यह एक जिम के अंदर का दृश्य है |

यह एक दीपावली का दृश्य है।

इस ईमारत के बाहर बहुत सी महिलाये और पुरुष तथा बच्चे पंक्तियों में खड़े हुए नजर आ रहे हैं

उन छोलों की ऊपर थोड़े से प्याज भी डाले गए। हैं।

इसमें से ज्यादा तर मूर्ति बौद्ध धर्म की दर्शाई गई हें।

यह एक मुर्गा-मुर्गियां पालन केंद्र का दृश्य है।

यह एक न्यायालय का दृश्य है ।

जहां पर बहुत सारी रोशनियां दर्शाई गई है।

और कुछ लोग बाहर खड़े दर्शाये गए हैं |